ऐसा ध्वज और बलूंस दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी मार्केट में एक शॉप की हो ऐसा दिख रहा है शॉप में अह जो कारपेट नीचे पड़ा प--

बड़ी चेयर सोफा लगाए हुआ है।

यह फोटो किसी होटल की दिखाई दे रही है। होटल में बहुत सारी टेबल और कुर्सियां--

बहुत सारी चीज लगाई हुई हैं बहुत सारे पंखे हैं और बहुत सारी लाइट्स भी हैं होटल में।

यह फोटो किसी ऑफिस की हो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ऑफिस या फिर होटल ऐसा है कुछ।

रोड के बीच में बच्चे खड़े हुए हैं ए_सी है।

ऊपर एक का शॉप भी है जिसका नाम अनमोल ऐसा लिख रहा है।

हॉल की या गार्डन एरिया की दिखाई दे रही हैं।

नीचे चिराग जो यु ऐसा कुछ--

दिखाई दे रहा है बहोत सारी साड़ियां लटकी हुई है और इस बार बहोत सारे ड्रेसेस भी दिखाई दे रहे हैं।

उस पार बहुत सारी बिल्डिंग है अलग अलग--

यह फोटो किसी बीच रास्ते की दिखाई दे रही हैं।

प्ले गार्डन के बीच में एक कारपेट अं--

बहोत सारी बाइक भी पार्क की गई है इसका कलर रेड और वाइट कलर का है।

इस सब रंग बिरंगे फूलों यहां पर लगा रहे है इस फोटो में एक औरत भी खड़ी है ऐसा दिख रहा है।

यह फोटो किसी होटल का दिख रहा है।

इस फोटो में दो चार टेबल लगे हुए टेबल के ऊपर--

बाजू का जो दिवाल है उसका रंग व्हाइट और ब्लू दिखाई दे रहा है फर्श एकदम साफ है।

जिम में कई सारे जिम के मशीन लगाए दिए है।

मेन के मा पाछर दीवाल है उसमें दो हाठ है जो फ्लावर से डेकोरट का--

यह फोटो किसी मार्केट की दिखाई दे रहीं हैं मार्केट में कई सारे लोग--